ये किसी घर की पिक्चर लग रही है।

यहां पे बैठने के लिए रखी है।

बाइक स्कूटी वगैरा खड़ी दिखाई दे रही है।

जिसमें खेत नजर आ रहे है खेत में कुछ फसल भी लगा रखी--